यहाँ पे बहुत सारे अंगूर दिखाई दे रहे है जो की काले काले रंग के हैं।

और ये लड़को के कपड़े का डिब्बा है बगल में एक कॉपी जैसी रखी हुई है जिसमे एक लड़के का चित्र बना हुआ है ।